इस इमेज में एक पक्षी नजर आ रहा है। यहाँ पर हरे रंग के बहोत सारे पत्ते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हरे रंग के काफी सारे पौधे नजर आ रहे हैं।

ये दीवारें ईंटों से बनी हुई हैं। यहाँ पर एक बोर्ड दिखाई दे रहा है। इस बोर्ड के ऊपर कुछ लिखा हुआ है।

दीवार के ऊपर टोकरियाँ रखी हुईं हैं यहाँ पर कुछ और भी चीज़े रखी हुईं हैं।

इस इमेज में बहोत सीढ़ियां बनी हुई दिखाई दे रही है।

ये इमेज रात के समय ली गई है यहाँ पर पार्क जैसा स्थान दिखाई दे रहा है यहाँ पर बोहत पेड़ नजर आ रहे है।

इमेज में मंदिर जैसा स्थान दिखाई दे रहा है यहाँ पर काफी लोग दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर इस स्त्रिया नजर आ रही हैं यहाँ पर अ कुछ लाइट्स जगती हुई नजर आ रही हैं।

ये इमेज रात के समय ली गयी है।

बाइक के पास एक बंदा खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ नजर आ रहा है।

यहाँ पर छत नजर आ रही है छत पर लाइटस जगती हुई नजर आ रही है छत पर पंखे लगे हुए है।